मार्बल का फर्श है। एक चटाई है।

ये बाइक का शोरूम है। यहाँ पर सारी की सारी बाइक रॉयल इन फिल्ड की हैं।

लडियो से रंग बिरंगी लाड़िया लगी हुई हैं ये जल रही हैं।

इस तस्वीर में एक रोड को दिखाई गया है। रोड के साइड में --

लेडिस बैठी हुई है दुकान में।

ये भवन के बाहर का दृश्य है। भवन के बाहर --

ये विद्यालय के बाहर का दृश्य है।